और सब फोटो खिंचवा रहे हैं।

टोकरी पड़ी है और ये सब एक स्लैब पे रखी गई है जिसके नीचे अख़बार--

छोटे छोटे बॉक्स में गत्ते पड़े हैं जिसमें कपड़े पड़े हैं और दूसरी तरफ--

और यहां पे रेड कलर के पर्दे लगे हैं साइड में वाटर कूलर पड़ा है।